और इस बस के बगल में कई सारी बसें खड़ी हुई हैं और ये बस कहीं --

ये एक बस स्टैंड का चित्र दिखाया जा रहा है कि इस बस स्टैंड में कई सारे बसे खड़ी हुई हैं।

ये एक ये एक रेस का चित्र दिखाया जा रहा है कि कई सारे बच्चे लाइन लगा कर एक प्रतियोगिता कर रहे हैं।

मालिक खड़ा हुआ है और इस मजदूर से मजदूर का काम देख रहा है और अगल बगल कई सारे मजदूर बहुत मन लगा के काम कर रहे हैं।

और एक व्यक्ति एक टॉर्च से देख रहा है और एक व्यक्ति इस गुफा के अंदर जा रहा है और इस गुफा को --

ये एक ये एक ये एक इस मार्केट का चित्र दिखाया जा रहा है की इस मार्केट मे कई सारी गड़िया खड़ी है।

और कुछ व्यक्ति इधर माला बना रहे हैं और कुछ व्यक्ति बेच रहे हैं।

एक फव्वारे का चित्र दिखाया जा रहा है। इस फव्वारे के अगल-बगल छोटी-छोटी बाउंड्री करवाई गयी है और इस फव्वारे के बगल नीचे कई सारा पानी डला हुआ है।

और और इस स्कूल कई सारे बच्चे पढ़ने आते हैं और कुछ बच्चे --